और यहाँ पर सेल्फी ले रहा है वो और नीचे हमें रोड दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है।

यहाँ धोबी घाट वाले फर्शिया दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमे एक पूल दिखाई दे रहा है जो की लोहे का है।

और यहाँ पर हमे बोहत बड़ी पहाड़ी दिख रही है जहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा से--

लिफ्ट दिखाई दे रही है और एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है जो की काँच का है और यहाँ नीचे हमे फर्श वाइट ब्लैक दिख रहा है।

अ भगवन बिठाए हुए है और उन्हैं बोहत ही सुन्दर तरीके से डेकोरेशन किया गया है सजाया गया है।

यहाँ पर हमे बोहत सुन्दर गार्डन दिखाई दे रहा है जहाँ पर बोहत सारे झूले हमे--

और हमे यहाँ पर लड़के ने म वाइट कलर की बनियान और नीचे वाइट कलर का लोअर --

यहाँ पर हमे एक कार्यालय दिख रहा है जहाँ जो की--

टूथपेस्ट दिखाई दे रहा है बहुत सारे मॉइस्चरीज़र क्रीम यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पर हमे पेन दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर हमे बोहत सारे मिठाइयाँ दिख रही है यहाँ कांच के बॉक्स में रखी हुई है यहाँ पर सामने की तरफ भी हमे रेक में बोहत सारे--

यहाँ पर हमे एक अ गढ्ढा जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक ट्रेक्टर चल रहा है।

जहाँ पर हमे बहोत ही सुन्दर डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।